सामने एक घर बना हुआ है उसकी ऊपर एक और घर बना हुआ है जो अभी ईटो का प्लेर लगी हुई हे नीचे एक बाइक पार्किंग --

बोर्ड के पीछे एक लोहे कितने का खम्मा लगा हुआ है उसकी बगल में भी एक बिल्डिंग बनी हुई है सामने--

सामने एक बोर्ड टंगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है पीछे एक गोला सा ईंटों का गोला बना हुआ है और--

लोग ई-रिक्शा से जा रहे हैं ई-रिक्शा का रंग और साड़ी का रंग आसमानी कलर का हैं बादल खुला हुआ हैं आंगे बिल्डिंगे बनी हुई हैं। कुछ पेड़ भी लगी हुई--

एक गुलाबी कलर का घर बना हुआ है जिस पर स्लेटी कलर भी दिखाई दे रहा है घर बहुत पुराना है।